इस इमेज में यहाँ योगा करते हुए लेडिसे दिखाई दे रही हैं।

इमेज में यहाँ बहोत सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही है। उनपर है लेडीसे है बैठी हुई गेंट्स बैठे हुए मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में यहाँ पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है उस पर कुछ चलते हुए लड़के लेडीसें दिखाई दे रहीं --

इस इमेज में यहाँ पर रोड पे बहोत सारी भीड़ दिखाई दे रही है जहा पर कुछ लोगो को कुछ लेडिस है बहुत सरती खड़ी हुई है।

ये विशिष्ट वरिष्ठ अअ अतिथि बैठा हुआ है टेबल के सामने दिखाई दे रहा है|